कुछ लड़कियों ने हाथ में कैची और पेपर पकड़ा हुआ है। एक टीचर खड़ी है जिनकी साड़ी का रंग पर्पल और क्रीम है।

ये चित्र एक किचन का है जहां पर दो चिमनियां दिख रही हैं।

यह चित्र एक कार रिपेयरिंग गैरेज का है जहां हमें सफेद रंग की कारें दिखाई दे रही हैं।

एक आदमी जिसने ऑरेंज टी शर्ट और नीला चड्ढा पेहना हुआ है आसमान में नीला रंग है गैराज के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

रूम में ड डेंटल ओ_पी_डी लिखा हुआ है लाइटें लगी हुई है कांच के दरवाजे बने हैं कुछ पेड़ रखे हैं और सुरमई कलर की बेचें भी रखी हैं।

ढाबे का नाम बल्ह बल्हारा ढाबा है।

और बच्चों के खेलने के लिए फिसलपट्टी भी बनी हुई है।

रेस्टोरेंट में ऑरेंज रंग के सोफे और कुर्सियां हैं।

एक बच्चा काले रंग के स्टूल पर बैठा है जिसने पीले रंग की टी शर्ट पेहनी हुई है सामने एक अंकल दिखाई दे रहे है।

जिसने सफेद रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ है।

पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं स्कूल में बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की है।

ये तस्वीर एक बार केसीनो की है।

पीछे हमें बहुत सारी शराब और सैम्पियन की--

इस तस्वीर में हमें कुछ मजदूर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें एक लकड़ी की सेंटिंग और सीमेंट दिखाई दे रही है।

ढाबे के बाहर एक दुकान है जहां बहुत सारी चीज के पैकेट टंगे हुए हैं एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ जा रहा है।

ये तस्वीर एक बहोत बड़ी चट्टान की है जिस पर एक आदमी बैठा हुआ फोटो खिंचवा रहा है।

नीचे दो सफेद रंग की बोरी रखी है एक लाल कलर का बैठने का स्टूल है।